मचवारी पकड़ के लेके आए है पीछे टाइल्स दिख रही है और ये अब बिकिगे --

बाइक चला रहे पिच्छे मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है उपर आसमान दिखाई दे रहा जिसका रंग काला सफेद है और यह रोड दिखाई दे रहा और एक लडकीया जो है फोन पे बात कर रही है दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे बहुत सारे लाइट दिख रहे मुझे और सीलिंग भी सफ़ेद कलर की दिखाई दे रही है कुछ झुंबर लगे हुए जिसने और लाल लाइटे जला रहे है।

और इधर उन्होने नीले कलर की शर्ट पहनी है एकला जीन्स पहना है और ये बहुत ऊपर की फोटो है और यहा पे बैठे हुए है।

नदी का पानी है उजनी लागती ही दे रहे है और पिच्छे कुच्छ पर्वत दिखाई दे रही है और उपर आसमान दिखाई दे रहा है का रंग नीला है अंकल ने और एक दादा ने एक धोती म गुलाबी पेहणी हुई--

और आजूबाजू केले के पत्ते लगे हुये है उपर --

और यहा पर मनपुरम गोल्ड लोन लिखा हुआ है यहा पर इंटरनेट भी लिखा हुआ है यहा पे काच के गेट दिख रहे है सामने कुछ गाड़ीया यहा पे खड़ी हुई दिख रही है और खंबे लगे हुये है और एक आदमी अंदर जा रहा।

यहाँ पे दो आदमी है जो की गुफ़ा के अंदर है और ऐसा लग रहा है ये फस गए है यहाँ पे कुछ पत्थर भी इनके ऊपर दिख रहे है मुझे और सकरा रास्ता है।

फूलोका डेकोरेशन बनाया है फूलोसे फुले झालर पे टाँगी हुई है और यहा कैमरा मन दिख रहा है बहुत सारे मुझे नीचे क्लिन करके--

हा टेंट मुझे दिखाई दे रहा है कुच्छ घर दिखाई दे रहे है यहा पे एक बुजुर्ग अंकल है और दो तीन लोग जवान मुझे--